घर में बहुत सारा खिड़की दरवाजा दिखाई दे रहा है।

वायर भी दिखाई दे रहा है इस तस्वीर पर।

इस तस्वीर पे हमें चेयर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वी में हमें पानी भी दिखाई दे रहा है।

आसमान भी दिखाई दे रहा है।

ब्लू व व्हाइट आसमान भी दिख रहा है।

और रिपेयरिंग करके दिखाई दे रहा है हमे इस तस्वीर पे।

तस्वीर पे हमें एक रास्ता दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर पर हमें एक घर का अंदर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर पर हमें एक गर जैसा दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर पे हमें बहुत सारा इंसान दिखाई दे रहा है।

लाल कलर का वॉल दिखाई दे रहा है हमें।

इस तस्वीर पे ट्राली भी दिखाई दे रहा है।

सामने में पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर पे हमें बहुत सारा इंसान दिखाई दे रहा है।

सामने में बाइक भी दिखाई दे रहा है।

व्हाइट आसमान भी दिखाई दे रहा है इस तस्वीर पर।

बहुत बरा लंबा घर दिखाई दे रहा है।

और इसमें डिजाइन भी दिखाई दे रहा है हमें।

घर का ऊपर में क्रॉस दिखाई दे रहा हैं।

कार्टून भी दिखाई दे रहा है इस तस्वीर पर हमें।

तीन ठो स्टंप दिखाई दे रहा है इस तस्वीर पर।

सामने में बहुत बड़ा घर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर पे हमें एक दुकान दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर पे हमें एक नदी दिखाई दे रहा है।

सामने में लोहा पोस्ट भी दिख रहा है।

गेट में दो पोस्ट दिखाई दे रहा है हमे।

इस तस्वीर पे हमें पोस्टर दिख रहा है।